एक शॉप है और यहाँ पर ब्लू कलर का इसकू वो भी है स्टूल भी है और यहाँ पर बहोत सारा सामान भी है यहाँ पे एक चटाई भी है।

ये एक मंदिर है जो व्हाइट कलर का है और यहाँ पर एक पेड़ भी है।